इस तस्वीर में मुझे रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे कुछ जूसर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रही हैं।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

यहां मुझे कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे एक केक दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे दो कार दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे एक महिला दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है।